बहोत सारे जंगल है और पहाड़ भी हैं और काफी अच्छी रस्ता है।

एक गार्डन है जिसमें बहोत सारे फ्लावर्स लग रहे है जो की कईं तरह के है। जैसे चमेली गेंदा गुलाब और बहोत सारे या --

यहाँ पर बहोत सारे जीन है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है एक रेलवे लग रहा है और रेलवे काफी शांत पडा हुआ है।

यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि अपनी एक फोटो क्लिक कर रहा है।

यह एक ऑफिस है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति है जो की काम कर रहे है एक व्यक्ति और एक बुजुर्ग आपस में बात कर कुछ किसी काम के विषय में बात कर रहे है और एक बुजुर्ग और है जो कि उन्हें देख रहे है सामने एक कैंलडर खा है। (